यहां पे बाहर एक गेट लगा हुआ है।

कई सारे बॉटल रखे हुए हैं बेसिन लगा हुआ है।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

और बाहर एक स्कूटी खड़ी है।

यहां रेड और वाइट कलर का बलून लगा हुआ--

और यहां पे दो तीन ऑटो हैं।

और कुछ आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

पीछे कई सारी कार खड़ी है बगल में एक बाइक भी खड़ी है।

यहां पे बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

एक पुरानी डाला खड़ी है।

क्लासिक जिम जो है वो रेड कलर के लाइट में चमक रहा है।

एक प्रकार के सोफे रखे गए हैं टेबल रखा गया है।

कुछ पोस्टर वगैरह बना हुआ है।

जहां पे अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

यहां बाहर भी कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

दीवालो पे वायरिंग का काम हो रहा है।

कुछ स्टैचू पॉइंट पे रेड कलर का रिबन लगा हुआ है।